पीछे की ओर कुछ फूल लगे हुए हैं।

सड़क दिखाई दे रही है और एक आदमी और एक महिला गाड़ी पर बैठ कर जा रहे है सामने कि तरफ एक ब्रिज नज़र आ रहा है और बड़े पेड़ लगे हुए है।

इसमें एक स्कूल कॉरीडोर दिख रहा है और यहाँ पर स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और इनके बेंचेस के सामने बहुत सारे अ चार्ट पेपर और अ स्टेशनरी आइटम रखा हुआ है।

क्लासरूम कॉरीडोर की है और अ यहां पर बच्चे बैठ कर किताबों में एक्टिविटी कर रहे हैं एक लड़की ठहरी हुई है और पीछे दीवारों का रंग लाल और सफ़ेद है और बड़ी खिड़कियां हैं।

यह चित्र में एक मेला दिख रहा है| और यहाँ पर एक अ लोकल फ़ूड फेस्ट चल रहा है| यहाँ पर कई अ एक स्टेज परफॉरमेंस कर रहे हैं बहुत सारे लड़के इन्होंने हाथ में गिटार पकड़ा हुआ है।

कॉरीडोर की है और यहाँ पर अ स्टूडेंट्स बैठकर स्कूल ऐक्टिविटी कर रहे हैं। हम ये पीछे की तरफ --